पिकअप में कुछ कट्टे लोड कर रखे हैं सामने हमने सरसों की ढेरी लगाई है और ढेरी के हम अभी कट्टे भरेंगे और कट्टे तो हमने भर ही दिए।

हेलो गाइज आप देख सकते हैं हमारे सामने इस तस्वीर में आप देख सकते हैं हमे यहां पार्क नही दिखाई दे रही है।

हेलो दोस्तों आप कैसे हैं आप देख सकते हैं हमारे सामने इस तस्वीर के अंदर एक मोर है।

यहां पर मिलती है एक तरफ जींस पैंट की दुकान है देख सकते है दो --

और बच्चे है यहां पर सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं।

आप देख सकते हैं यहां पर इस दुकान के अंदर सभी मिर्च मसाला मिलते हैं और इस दुकान के बाहर पोस्टर में --

हैलो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक हमारे दो बजके पच्चीस छब्बीश मिनट के बात है दोस्तों --

और यहां से बाहर आ रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं।

कैंसर हॉस्पिटल है यहां यह रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये हॉस्पिटल है दोस्तों।

देख सकते हैं यहां पर एक हवेली नाम लिखा हुआ है पूरा से बनाया गया है यहां पर --

और यहां पर म्यूजिक वगैरह सभी नाम लिखे है रूम्स अवेलेबल का नाम लि--

यहां पर आप देख सकते हैं सभी प्रकार का समान उपलब्ध है।

मतलब कितनी हरियाली है दोस्तों आप देख सकते थोड़े थोड़े बादल भी आए हैं और आप देख सकते हैं आखिर की लोकेशन बहुत शानदार लोकेशन है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां के बादल --

कितना अच्छा बीकानेर से भारत।

और यहां से सभी प्रकार के मकान में यूज दिखाई दे रहा है दोस्तों आप दे सकते हैं।